साइड में कैलेंडर लगा हुआ है।

ये एक बहोत बड़ा सा टेबल है उसके पर बहोत सारे सामान रखी हुई हैं बहोत से छोटे छोटे सामान रखी हुई हैं सामान--

एक लाइन से बहुत मछली का भंडार है बहोत बड़ी मछली रखी हुई है और छोटे छोटे समान रखे हुए मछली रखे हुई है बहोत सारी।

बहोत सारे फ्रूट्स के पेस्टर लगे हुए है।

ये बहोत बड़ा सा लगा हुआ है कुर्सी लगी है एक आयना लगा है एक सोकेस लगा हुआ है लोकर लगा हुआ है खिड़की लगी हुई है लाइट लगी हुई है और उसके ऊपर से गद्दा बिछाया हुआ है।

बहोत बड़ा सा पार्क बना है बीच में बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है छोटे छोटे फूलों के पौधे लगे है बड़े बड़े बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उनको पेड़ फूलों को अलग अलग डिजाइन में कटिंग किया गया है पेड़ पौधे के पत्तियों बस काट के --

जो की अलग अलग तरीके के हथियार रखे हाल रखे में बहोत सारे फोटो डिजाइन किया गया बड़ा सा मटका रखा हुआ है।